यह एक चाट भंडार है यहाँ पर चाट की बहुत सारी चीज़े रखी है जैसे प्याज और चम्मच वेजिटेबलस और चटनियां पानी पुरी का ठेला है चाट का ठेला है पानी की बॉटल है।

ये एक सुपर मार्किट है जहाँ पर कोई तरह के बैलून्स है कांच के दरवाजे है रेलिंग है जीने है और--

जहा पर रेलिंग है कांच के बड़ी-बड़ी खिड़कियां है पेड़ है है और एक इंसान है।